यह एक कमरा है वाइट कलर का सफेदी हो रखी है लाल कलर का पर्दा लगा है सामने कुर्सी दिख रही हैं लाल कलर की --

कुर्सी के ऊपर पानी की बोतल रखी है एक कमरा दिख रहा है घर के सामने पेड़ दिख रहा है बड़ा- सा --